लाइट्स भी दिखाई दे रही है पूरा वाटर पार्क दिखाई दे रहा है।

पानी एक दम ब्ल्यू दिखाई दे रहा है ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है।

सब लोग क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दे रहे--

यहां पे फूल दिखाई दे रहे हैं फूल पीले रंग के दिखाई दे रहे हैं अरे उसकी डंडिया दिखाई दे रही है।

पुतलों ने साड़ियां पहनी हुई दिखाई दे रही है।

लाल रंग की साड़ी भी पहनी हुई दिखाई दे रही है।

ये कांच के दरवाजे दिखाई दे रहे हैं काफी सारे चप्पल भी दिखाई दे रहे हैं ऊपर भी दुकान है।

पीछे पर्दा भी दिखाई दे रहा है जो काले रंग का दिखाई दे रहा--

यहां पे बहुत बड़े बिल्डिंग दिखाई दे रही है एक ब्रिज भी दिखाई दे रहा है यहां पे अभी बहुत बड़े--

ऊपर थोड़ा सा आसमान भी दिखाई दे रहा है।

लोग चलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं एक लड़की किसी एक्टिवा चलाते दिख रही है।

यहां पे एक कमरा दिखाई दे रहा है कमरे में चारपाई दिखाई दे रही हैं चारपाई पे--

कुछ लेडिस बैठी हुई भी दिखाई दे रही है काफी सारे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे--

ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है आसमान ब्लू दिखाई दे।

यहां पे एक टेक्टर दिखाई दे रहा है टेक्टर में बड़े से पहिये पहिया भी दिखाई दे रहा है एक छोटा पहिया भी दिखाई दे रहा है।

एक लकड़ी की पाली दिखाई दे रही है जो सफेद रंग की दिखाई दे रही है नीचे मिट्टी दिखाई दे रही है।

सूरज भी दिखाई दे रहा है सूरज पीले रंग का दिखाई दे रहा है रस्ता भी दिखाई दे रह--

और साइड में काफी सारी एक्टिवा भी दिखाई दे रही है एक पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

और काफी सारे कंकड़ पत्थर भी दिखाई दे रहे है।

काफी लोग दिखाई दे रहे हैं।

ऊपर ऐ_सी दिखाई दे रहा है।

ऊपर एक पंखा दिखाई दे रहा हैं।

हरे रंग के कार्पेट पर काफी दूर डंबल भी दिख रहे है दूर काफी सारे साधन भी दिखाई दे रहे है।

एक काली दीवार दिखाई दे रही है और सफेद रंग का पत्थर--

दुकान के अन्दर एक स्पोर्ट बाइक दिखाई दे रही हैं।

काच के दिखाई दे रहा है सभी ब्लू दिखाई दे रहा है।

काफी सारी पेंटिंग भी दिखाई दे रही है।

कोने में एक आदमी भी दिखाई दे रहा है।